हमें एक बोर्ड दिख रहा है जहां पे बालूघाट एयरपोर्ट लिखा हुआ है वह गेट अभी बंद है आस पास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

शेड भी दिख रहा है जो चारों तरफ से बंद है।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन दिख रहा है जहां पर बहुत सारे फूल पौधे--

जहां पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं दूर दूर तक सिरफ दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

वे अपने हाथों और पैरों में जूते पहने हुए हैं।

ये तस्वीर में समझ आ रहा है कि यह बस स्टैंड है। जहां पर बहुत सारी बसेस खड़ी हुई है।

जोकि लाल रंग की है बाकी पीछे और भी बहुत सारी चारपाई हैं जोकि नीले रंग की है।